और रोड की साइड मैं एक गाड़ी खड़ी हुई है वाइट कलर की हैगी और रोड की साइड मैं बहुत ज्यादा पेड़ लगे हुए है कुछ छोटे है पेड़ कुछ बड़े है और वहां पर लाइट के खंबे भी लगे हुए हेंगे।

ये काफी अच्छा रेस्टोरेंट हेंगा और काफी अच्छा मिलता है यहाँ का खाना।

यहाँ पर एक ट्रैन की पटरी हैगी और काफी जंगल हैं घना यहाँ पर ये एक एक टूरिस्ट पैलेस हैगा।

यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई हेगी ये बहुत ज्यादा चौड़ी बनी हुई हेगी और बहुत बड़े एरिए मैं बनी है।

यहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैगे यहाँ पर काफी पेड़ पौधे लगे हुए है और यहाँ फाउंटेन बना हुआ --

यहाँ पर एक रेल्वे स्टेशन हैं और प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ हैं प्लेटफ़ॉर्म पर काफि सारी चेयर लगी हुई हैं लोगों को बैठने के लिये।